पास कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति जो पैदल जा रहा है वह भी दिखाई दे रहा

यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मुहँ पर कुछ लगाए हुए है।

यहाँ पर हमे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसमे कुछ व्यक्ति खड़े हुए है।